एक मछली है यहां पर बहुत सारी मछलियां है काम कांटे वाली बड़े छोटे कांटे वाली और कं कांटे नहीं है उसमे बिलकुल मांस मांस है।

नीचे की तरफ इतना सारा वो क्या व घोडा बचा रखा है जैसे वो बोलते है न जैसे अच्छा डांस करा है उसके ऊपर फोड़ देते है वो फूल से निकलते हैं।